मुझे यहाँ पर लाल गुब्बारे सफेद गुब्बारे दिखाई दे रहे है और वहाँ तीनो कलर हमारे भारत के है जो लिखे हुए है इंडिया हमारा भारत महान--

गाड़ी से आदमी जा रहा है एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसने ट्रोली भी साथ में ली है और यहाँ पर मुझे आसमान भी अच्छा देखने को मिल रहा है।